कुछ लोग बस को डंडे को पकड़े हुए हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और यात्री चढ़ रहे हैं। कुछ यात्री देख रहे हैं। कुछ यात्री जा --

नदी में बोट को पहार पानी को खेच रहे है। बोट में से पानी नदी नाव नदी में ही है। नाव जो है पानी --

सामने के और एक आदमी आ रहा है एक जा रहा है एक पीछे के साइड खड़ा हुआ है वो देख रहा है एक आदमी किसी को उसे समझ --

ये एक शॉप है उन्होंने नीचे एक देवी जी को बिछा दिया है। एक कालीन बिछा दी उन्होंने देवी जी की मूर्ति लगा रखी गणेश जी लक्ष्मी जी और दुर्गा जी सब की मूर्तिया लगा रखी --

और वहां पर स्पीकर पर कोई बोल रहा है जो चर्च पर टेबल लगी हुयी है उनके आगे और एक टेबल लगी हुयी --

मैदान है यहाँ पर हरी घास बिछी हुई है और तीन बॉय हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट --

यह भाग रहीं हैं जंप कर रहीं हैं और ग्रिल से लगा हुआ है। पेड़-पौधे बोहोत हैं। --

बोर्ड बना हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है। बाइके साइड से लगी है। कुछ एक लेडिज बैठी हुई है बैंक के आगे और एक क कु कु बॉउंड्री सी बिछी हुई है।